यहां पे एक गुलदस्ता रखा हुआ--

वहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

खिलौने भी दिख रहे हैं यहां एक टेबल भी दिख रही है यहां दो फोन भी रखे हुए हैं यहां एक टेबिल भी रख --

की है यह एक गुब्बारा भी लगा हुआ है यहां एक डोर भी लगी हुई है।

यहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है आगे एक जाली लगी हुई भी दिखाई दे रही है उस --

पेड़ भी लगा हुआ दिख रहा है यहां एक रोड भी जाती हुई दिखाई दे रही है यहां बादल भी छाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ दो गाड़ियां खड़ी हुई भी दिखाई दे रही हैं।

ये एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है यहां से रास्ता जाने का भी दिखाई --

आर_एच लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहां बहुत सारी चेयरे रखी हुई है वह भी दिखाई दे रही है। यहां बहुत बड़ा --

यहां एक बोर्ड लगा हुआ भी दिख रहा है यहां बहोत सारे पेड़ लगे हुए भी--

लड़कियां भी जाती हुई नजर आ रही है।

यहां एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां बहोत सारे --

यहां एक बहोत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है यहां दवाई का बोर्ड भी लगा --

यहां एक टी_वी भी लगा हुआ है।

यहां बहोत सारे पंखे भी लगे हुए--

आ रही है यहां एक पेड़ भी लगा हुआ दिख रहा है यहां झाड़ी लगी हुई भी दिख रही है।

यहां तौलने का सामान भी रखा हुआ है यहां अंडे भी दिखाई दे रहे हैं।

सजावट भी दिखाई दे रही है यहां बहुत अच्छा पर्स भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां --